फोटो में हमें किसी घर की तस्वीर देखने को मिलती हैं इसके अंदर एक बाथरूम दिख रहा है एक शौचालय --

यह फोटो एक हटिया से ली गई है यह हटिया के पीछे दुकान की तस्वीर है इस दुकान में हमें गाजर लौकी सेम हरी मिर्च --

के अंदर ली गई है यह फोटो इस फोटो में हमें एक आदमी चाय पीत चाय या कॉफी पीते हुए नजर आ रहा है और उसके फ्रेंड भी उसके साथ आए हुए हैं वह चाय या कॉफी के साथ एक ब्रेड --

एंटीक एवं खूबसूरत एवं कीमती चीजें देखने को मिल रही है यह छोटी परंतु बहुत ही ज्यादा कीमती वस्तुएं हैं।